गाय की तरह जानवर के नक़्शे बने हुए है खड़े हुए है एक बड़ी और एक छोटी और आस पास मिट्टी है और पौधे नजर आ रहे है।

और बच्चों के झुले फिसलपट्टिये दिख रही है और कुछ बच्चे भी नजर आ रहे है।

इस तस्वीर में एक बहुत बड़ी इमारत नजर आ रही है है जिसमे बहुत सारी खिड़कि है और काँच भी बने हुए है और उसके नीचे एक गेट भी नजर आ रहा है।

तस्वीर मे खेल का मैदान नज़र आ रहा है जो की हरे रंग का मैदान है ऊपर हरे रंग की जाली लगी हुई है।

उस पर एक महिला खड़े हो कर सफ़ेद कपडे पहन कर नृत्य कला देखा रही है कत्थक कर रही है।

ये लोग दर्शन के लिए खड़े हुए है और अंदर मंदिर के कुछ लोग भी खड़े है और इसको मालाओ से फूल की सजाया गया है आसमान और बिजली का तार भी दिख रहा है।

वे मे लडके लडकीया दिखाई दे रही हैं जोकी रंग बेरंगी चटाईयो पर योगा करती हुई नजर आ रही हैं और एक बडा कांच लगा हैं जिनमे उनका अक्स बी दिखाई दे रहा हैं।

सामने एक बहुत बडा शिशा लगा हुवा हैं और दिवार पर कुछ कुछ टंगा हुआ है और अंग्रेजी मी लिखा है स्वेट इज फॅट क्राइंग ।

इस तस्वीर मे एक गिरिजा घर के अंदर का दिखाई दे रहा है जहां पर पाद्री लोग कुछ पड़ रहे है।

आसपास पेड पौधे बहुत सारे नजर आ रहे है गेट नजर आ रहा है और एक पुरुष अंदर जाता हुआ मोटर साइकील पे नजर आ रहा है और भी मोटर साइकीले खडी हुई है।

मे एक लडकी दिखाई दे रही है जोके लाल रंग के कपडे पेहने हुए नृत्य कला दिखा रही है।

नीचे मट्टी से लग रही हैं और ये पुरुष के दोनों पेर मे जूता है और दोनों हास जमीन पे टिके हुए है।

लाइटे जल रही है और भी लोग नजर आ रहे है।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

ये पुरुष कुछ अपना काम कर रहे है ट्रक भी खड़ा हुआ है अंदर ऊपर शेडो से बना हुआ हिस्सा है।

और यंत्र रखे है बहुत सारे नीचे से तार दिखाई दे रहे है और ये आदमी आखे बंद कर के सीधा लेटा हुआ है।